इस इमेज में हमें प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है

ये तेमे में मुझे टार दिखाई दे रहा हे।

तारो पर साकरो से फसी हुई दिखाई दे रही हे एक आदमी काम--

और लोवर पहने हुए है भाटाई कलर का और एक ब्लैक कलर की टी सर्ट सर्ट और एक लोवर पहने हुए दोनों खड़े हुए दिखाई दे रहे है आउटफिट दे --

सफेद कलर की दिखाई दे रही है एक खंबा सा दिखाई दे रहा है एक सामने घर दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा --

एक ऑटो दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है ए -टी -ऊ -ऐल अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है बाजु में एक आदमी एक आदमी इस साइड खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक खंबा दिखाई दे रहा है दो अ बहुत सारे बिजली के तार दिखाई दे रहे है।

इत इमेद में मुधे बथें दिथाई दे लहे है एत सपेद तलर ती बस द्रीन तलर ती एक लाल तलर ती बित ती बस पे लिखा हुआ है।